यह एक स्पोर्ट्स कि दुकान है और यहाँ पे बैट बॉल फुटबॉल बैडमिंटन और भी बहुत प्रकार के स्पोर्ट्स के समान मिलते हैं।

और काफ़ी खुबसूरत दिख रहा है और पहाड़ में लोग आते है घुमने और पहाड़ में घुमने में बहुत अच्छा लगता है ।